question bank in moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे moodle में question bank के बारे में
questions की categories और question bank में प्रश्नों को कैसे जोड़ना है
यह tutorial ubuntu linux os 1604
xampp 5630 से प्राप्त apache mariadb और php
moodle 33 और firefox web browser का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है
हालांकि internet explorer का उपयोग न करें क्योंकि यह कुछ प्रदर्शन विसंगतियों का कारण बनता है
इस tutorial के अनुसार site administrator ने आपको शिक्षक के रूप में पंजीकृत किया है
यह भी माना जाता है कि आपने अपने course के लिए कुछ course सामग्री uploaded की है
यदि नहीं तो कृपया इस website पर संबंधित moodle tutorials देखें
browser पर जाएँ और शिक्षक के रूप में अपने moodle site पर login करें
मैंने code files link में सभी टैक्स्ट के साथ एक टैक्स्ट फ़ाइल प्रदान की है जो इस tutorial में उपयोग की जाती है
बाईं navigation menu में calculus course पर click करें
हम प्रश्न banks के बारे में सीखना शुरू करते हैं
प्रश्न bank प्रश्नों का एक संग्रह है जो अधिकतर विषयों द्वारा आयोजित किए जाते हैं
प्रश्न bank में प्रश्न कई quizzes में पुन: उपयोग किए जा सकते हैं
यह प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष या अलगअलग बैचों के लिए अलगअलग quizzes बनाने में मदद करता है
browser पर वापस जाएँ
शीर्ष दाईं ओर पर gear icon पर click करें और फिर अंत में more… link पर click करें
हम course administration पेज पर we हैं
नीचे scroll करें और question bank named section पर जाएं
इस section में categories link पर click करें
add category section पर देखें
parent category dropdown पर click करें
यहाँ top इस course के लिए शीर्ष स्तर की श्रेणी है
यदि यह पहले से ही default रूप से चयनित नहीं है तो default for calculus चुनें
name field में basic calculus type करें
फिर पेज के नीचे add category पर click करें
calculus course के लिए categories का एक पदानुक्रम बनाएं जैसे मैंने यहां किया है
questions टैब पर क्लिक करके questions creation पेज पर जाएँ
नीचे create a new question button पर click करें
popअप window खुलता है
उस प्रश्न के type को चुनें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं
दाईं ओर question type के बारे में विस्तृत विवरण देखा गया है
मैं multiple choice चुनूंगी
popअप के नीचे add button पर click करें
add category चुनें जिसके लिए आप प्रश्न जोड़ना चाहते हैं
question name field में mcq with single correct answer type करें
question text भाग में निम्न प्रश्न type करें
default mark 1 पर set है और मैं इसे 1 ही रखू्ंगी
अगला option general feedback है यहाँ quiz जमा करने के बाद छात्र को टैक्स्ट दिखाया जाता है
इसका उपयोग प्रश्न के विस्तृत समाधान को दिखाने के लिए भी किया जा सकता है टैक्स्ट को टाइप या कॉपीपेस्ट करें जैसा मैंने यहाँ किया है
अब one or multiple answers dropdown पर click करें
यहाँ हमारे पास 2 options हैं multiple answers allowed और one answer only
मैं आपको दिखाती how कि दोनों options कैसे काम करते हैं
मैं पहले one answer only चुनती choose
shuffle the choices checkbox default रूप से checked है
answers section को देखने के लिए नीचे scroll करें
ध्यान दें कि यहां हर option एक grade और feedback से जुड़ा है
जैसा कि यहाँ दिखाया गया है choice 1 type करें
अब इस प्रश्न के लिए choice 1 सही उत्तर है
इसलिए मैं grade में 100% चुनूंगी
grade dropdown में हम हर choice को अपूर्ण अंक या ऋणात्मक अंक भी दे सकते हैं
आप बाद में इनका पता लगा सकते हैं जब आप moodle में अधिक अनुभवी होते हैं
इस उत्तर को चुनने वाले छात्रों के लिए फीडबैक को feedback text भाग में लिखा जा सकता है
शेष choices और grades भरें जैसा कि मैंने यहाँ किया है
अब नीचे scroll करें और इसे विस्तृत करने के लिए multiple tries section पर click करें
यहां ध्यान देंpenalty for each incorrect try field default रूप से 3333% पर set किया गया है
इसका अर्थ है कि छात्र को हर गलत उत्तर के लिए दंडित किया जाएगा
आप इसे छोड़ सकते हैं जैसा कि यह है या इसे यहां दिखाए गए any प्रतिशत विकल्पों में से किसी में भी बदल सकते हैं
मैं 0% चुनूंगी क्योंकि मैं गलत उत्तरों के लिए अपने छात्रों को दंडित करना नहीं चाहती
फिर नीचे scroll करें और पेज के नीचे save changes button पर click करें
हम देख सकते हैं कि हमारा प्रश्न question bank में जोड़ा गया है
ध्यान दें कि प्रश्न के प्रश्न टाइटल के बगल में 4 icons हैं
ये प्रश्न को edit duplicate preview और delete करने के लिए हैं
quiz में प्रश्न कैसे दिखाई देगा यह देखने के लिए preview icon पर click करें
चयनित प्रश्न और इसके options एक popअप window में खुलते हैं
fill in correct responses button पर click करें
submit and finish button पर click करें
यह प्रश्न का उत्तर देने के बाद छात्र द्वारा देखी जाने वाली प्रतिक्रिया को दिखाएगा
जब भी आप एक नया प्रश्न जोड़ते हैं तो हमेशा इसे cross check करने के लिए प्रिव्यू करें
इस popअप window को बंद करने के लिए close preview button पर click करें
अब हम एक mcq बनाते हैं जिसके एक से अधिक सही उत्तर हैं
पिछले चरणों का पालन करते हुए मैंने एक और mcq बनाया है
one or multiple answers dropdown में इस बार मैं multiple answers allowed चुनूंगी
दिखाए गए अनुसार choices 1और 2 और उनके संबंधित grades प्रविष्ट करें
छात्र जो केवल 1 सही उत्तर देता है उसे 05 अंक मिलता है
और जो छात्र दोनों सही उत्तरों को अंकित करता है उसे 1 and मिल जाता है
दिखाए गए अनुसार choices 3 और 4 और उनके संबंधित grades प्रविष्ट करें
और मैं penalty for each incorrect try field में 0% रखूंगी
फिर नीचे scroll करें और save changes button पर click करें
फिर short answer प्रश्न जोडें
प्रश्न के उत्तर में छात्र से किसी शब्द या वाक्यांश में type करने की अपेक्षा की जाएगी
create a new question button पर click करें और short answer option पर double click करें
दिखाए गए अनुसार प्रश्न बनाएं
case sensitivity dropdown में no case is unimportant चुनें
इस प्रश्न का सही उत्तर same logarithmic spiral है
मैं एक छात्र को पूर्ण अंक देने को तैयार हूँ यदि उसका उत्तर
हालांकि यदि छात्र उत्तर के रूप में logarithmic spiral लिखता है तो मैं आधा अंक दूंगी
आंसर्स section पर नीचे scroll करें
दिखाए गए अनुसार answer 1 और 2 और उनके संबंधित grades भरें
answer 1 text में asterix देखें
उदाहरण के लिए: एक छात्र लिखता है the evolute of a logarithmic spiral is the same logarithmic spiral
दिखाए गए अनुसार answer 3 और उसके संबंधित grade को भरें
ध्यान दें कि उत्तर text से पहले कोई asterix नहीं है
इसलिए उदाहरण के लिए: एक छात्र लिखता है the evolute of a logarithmic spiral is not the same logarithmic spiral
दिखाए गए अनुसार answer 4 और उसके संबंधित grade को भरें
ध्यान दें कि मैंने इस उत्तर के लिए केवल 50% अंक दिए हैं
फ़ीडबैक टेक्स्ट भाग में type करें you need to specify that its the same spiral and not any spiral
यह स्पष्टीकरण छात्र को प्रतिक्रिया feedback के रूप में दिखाया जाएगा
एक बार फिर मैं penalty for each incorrect try field को 0% रखूंगी
फिर नीचे scroll करें और save changes button पर click करें
add numerical प्रश्न को जोड़ते हैं
create a new question पर click करें और numerical option पर double click करें
दिखाए गए अनुसार प्रश्न बनाएं
इस प्रश्न का उत्तर 5mm है
यहाँ error margin 05 है
answers section के लिए नीचे scroll करें
दिखाए गए अनुसार answers error और grades प्रविष्ट करें
unit handling section को विस्तृत करें
मैं the unit must be given and will be graded option चुनूंगी
default रूप से unit penalty field 01 दिखाता है
यदि वे unit का उल्लेख किए बिना उत्तर लिखते हैं तो छात्र को आधे अंक मिलेंगे
units are input using dropdown में मैं the text input element option चुनूंगी
इसका अर्थ है कि छात्र को उत्तर के साथ unit लिखना होगा
units section को विस्तृत करें
unit को mm और multiplier 1के रूप में लिखें इसका अर्थ है कि उत्तर ऑप्शन mm में हैं
एक बार फिर मैं penalty for each incorrect try field 0% रखूंगी
और फिर नीचे scroll करें और save changes button पर click करें
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुंचते हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा moodle में question bank
questions की categories और question bank में प्रश्नों को कैसे जोड़ना है
यहाँ आपके लिए एक छोटा सा नियतकार्य है: question bank में और प्रश्न जोड़ें
विवरण के लिए इस tutorial के assignment link को देखें
इस tutorial को रोकें और कार्य पूरा होने पर फिर से शुरू करें
इस question bank में अब हमारे पास 10 प्रश्न होने चाहिए
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है
spoken tutorial project team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है
कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस forum में post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ